लौकिक सुन्दर बाहर प्राकृतिक द्रश्य है।

और बाहर एक स्कॉर्पियो उम एक मोटरबाइक एक साइकिल खड़ी हुई नजर आ रही है।

चित्र में के.डी.एम. पैलेस कर के होटल है उसका चित्रण दिखाया गया है।

जहाँ पर एक ढाबा जैसा कुछ है और वहाँ पे दो व्यक्ति चेयर लेके बैठे हैं एक बड़ा सा पेड़ है।

अभी यकीनन एक जीम का चित्रण है इसमें एक व्यक्ति देखते हुए खड़ा हुआ है और यहाँ पे जीम इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए--

यह भी एक बड़े से सुंदर आकर्षक मंदिर का चित्रण है।

और वहां से तार है गया हुआ है और तार में कुछ लोग बैठे --

इस चित्र में एक लाल रंग से सुशोभित मंदिर दूर में नजर आ रहा है।

किसी कंप्यूटर लैब या कैफे का चित्रण हैं।

यह भी यक़ीनन किसी खूबसूरत मंदिर के बाहर का दृश्य है।

और इस शॉप का नाम है प्रकाश ड्राई क्लीन्ज़र और ऊपर बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है।

भी पुष्तकालय का ही चित्रण दिखाया गया हैं।

जो गाँव के आस-पास स्तिथ है और पास में दो तीन घर दिख रहा हैं।

और इसका नाम है संस्कृति लाइब्रेरी ।

-ई विशाल सुंदर आकर्षक म-म-मंदिर का चित्रण है जो की वाक़ई बहुत खूबसूरत लग रहा है।